इस स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते आते हैं इस स्कूल में बहुत ही भीड़ लगा हुआ है।

बहुत ही कम मिलती है।

जो दिखने में अच्छा लग रहा है।

इस पार्क में कई आदमी आते जाते रहते हैं।